यख मा जी दूई आदमी छन यख मा जी बड़ा-बड़ा बिम छन यखम एक फैक्ट्री छा।

यखम एक बहौत बडु हॉल चा यखमा जी दीवालम एसी च लग्युं लाइट बी च लगीं यखमा जी टयूबलाइट

यख मा जी कई सारा लोग छन यख देखणम एक ब्यो छ लगण लग्युं यख मा जी दूल्हा-दुल्हन छन यख मा जी एक लड़का की शेरवानी छ पैनि टोप्लु छ पैन्यु दूल्हा वालु।